यहाँ देखिये आपको जो है फोटो में दिख रहा होगा ये रक्षाबंधन के लिए जितनी भी राखिया होती है सब राखिया हैं।

सामने देखिये एक पहाड़ी है पहाड़ी हू के अलावा इसमें आपको सामने मैदान दिख रहा होगा।